जगह दिखाया गया है। यह जगह दिखने में --

तक सिंचाई सप्लाई के लिए जाते हैं।

यहाँ बहुत दूर दूर से लोग घूमने और देखने के लिए आ --

इंडियन ऑइल दिखाया गया है।

अच्छी सुंदर परचार किये गए हैं।

फिर वे मजे करने के लिए आत --

फिरना बहुत ज्यादा पसंद होते हैं।

जो दिखने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुन्दर और अच्छे हैं।

बहोत बहु सारे गिरे हुए हैं ओर यहाँ बहोत सारे पानी विली में है और यहाँ बहोत ही एक अच्छा सुन्दर सा दोतीन घर दिखाये गये हैं जो घर बहोत बड़ा --

यह ए बहोत ही अच्छा और सुन्दर में और बहोत बड़ा मार्केट दिखाया गया है। जो यह मार्केट बहोत ही सुन्दर और अच्छा है और जिसमे एक पजेरो खड़ा है बलेरो।

अच्छा और सुंदर सा हमें स्टेज दिखाया गया है। यह स्टेज दिखने में बहोत ही सुन्दर और बहोत ही अच्छा है। यह स्टेज को --